एक जगह ऑरेंज कलर का एक जगह येलो का एक जगह रेड एक जगह पिंक और बड़े बड़े पेड़ हैं ।

पंजाबी जी सरदार जी खड़े हैं और दो सरदार जी बाहर से आए हुए हैं।

कांच की जो फर्नीचर है वो भी कॉफ़ी कलर का है ।

ग्लूकोज़ चडाने के लिए भी खम्बा लटका हुआ है ।

पेट्रोल भरने का चार्ज करने का आप्शन दिया हुआ है ।

और यहा बोहोत सारे गुलाब के फूल गेंदा के फूल चमेली के फूल --

टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पेहन के--

यहा ग्रीन कलर के पेंट हो रखे है ।

और खण्ड खण्ड खण्ड बोहोत सारे बने हुए है ।

उपर में भी एक स्टोर है उसमे भी खन खन बने हुए है ।

एक कैमरा मैन भी खड़ा है जो विडियो बना रहा है ।

ये पेट्रोल पंप हैं पेट्रोल पंप में एक ऑटो खड़ी हैं और ऑटो खड़ी हैं वो पेट्रोल भरवा रही हैं उधर कार की लाइन लगी हुई हैं ।

हॉस्पिटल है हॉस्पिटल के जो --

ऑफिस के सामने बोहोत लोग खड़े है बोहोत लोग बेठे है ।

जीन्स भी मिल रहा है शर्ट भी मिल रही है ।

चौखट पे ऊपर में माता का मंदिर बन रखा है और साइड साइड में झंडा भी दिया हुआ है ।

लोग एक दम बढ़िया है कॉलोनी भर के --

ये कार गाड़ी का शोरूम है यहां एक्टिवा लोगों को--

ये भारत पेट्रोलिम का एक बड़ा सा टेंकर है ।

जो पेट्रोल है वो निचे भर रहे है ।

डिज़ाइन की कलर कलर के पैर दान दिख रहे है।

साइड में बोहोत सारे पेड़ पोधे लगा रहे है।

मोबाईल वगेरह भी मिलते हैं सब चीज़ मिलते हैं--

खूब सारे फूल बगीचे है वाइट कलर का टेंट लगा हुआ है ।

एक लेडिज अपने बच्चे के साथ खेल रही है ।

ये एक फायर ब्रेकेट एरिया है चंडीगढ़ का --

सर्विस चंडीगढ़ का एरिया है चंडीगढ़ के हैं।

बोहोत बड़ा एरिया है रेड कलर की दीवारे है बोहोत बडी बड़ी --

बस के ड्राईवर हैं मेरे ख्याल से --

और हॉर्स लोन को दौड़ा रहे हैं कई लोग कई लोग बैठे हुए हैं।

वहाँ से इन्डिगो दे सामान लोट करेंगे और हवाई अड्डे में चल रहा है।

एक नीचे कुछ पोछ रहे है कार के --

बड़ा सा एयरपोर्ट है चंडीगढ़ का साइड में एक लेडिज और एक पंजाबी सर खड़े हैं ।

एक राउंड बण्डल रखा हुआ है ।

ये एक गार्डन है गार्डन में बोहोत सारे पेड़ पोधे हैं।